ये फ़ोटो एक स्टेज शो की हैजिसमे कवि अपनी कविताओ को लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे है।

इनको और भी दर्शनीय बना रही है।